इस फोटो में काम करते हुए मज़दूर दिखाई दे रहे हैं जिस में किसी मकान के ऊपर छत डल रहा है।

फोटो किसी बस स्टॉप का है जिसमें मेटाडोर गाड़ियां ऑटो दिखाई दे रहे है और नीचे की साइड ग्रीन कलर में दूभा दिखाई दे रही है और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।